जैसे कि हम देख सकते है ये एक पुस्तक भंडार है विजय पुस्तक भंडार।

माता रानी का फोटो लगा हुआ है और एक इंसान खरीदारी भी कर रहा है।

इस मस्जिद के आजू बाजू बहुत सी हरियाली और पेड़ पौधे हमें नजर आ रहे हैं।

और यहां पे बहोत धूप हो रही है।

तलाब एक प्लेटफार्म सा बना हुआ है।

और तालाब का पानी इस तीर जैसा हमें नजर आ रहा है।

और रसगुल्ले के दो डब्बे भी हमें नजर आ रहे है।

पीछे की तरफ एक ट्रक और एक आदमी ट्रक से नीचे उतरा हुआ भी हमें नजर आ रहा है।

जैसे क़ि हम देख सकते हैं हमें एक पुतला नजर आ रहा है जिसने महिलाओं के कपड़े पहन रखे हैं सलवार और सूट।

जैसे की हम देख सकते हैं ये एक सरकारी कार्यालय यैसा हमें प्रतीत हो रहा है।

देख सकते हैं कि ये उसके बाजू में एक ग्राउंड जैसा भी हमे नजर आ रहा है और एक --

और यहां पे बहोत सारी कुर्सियां और एक टेंट भी लगा हुआ है।

जैसे कि हम देख सकते है यहां पे बहुत सारे बच्चे काका शिल्प बना रहे है।

कि हम देख सकते है कि ए एक स्कूल है जहां पे बहोत सारे डेस्क रखे हुए हैं।

र जैसे कि हम देख सकते हैं यहां पे एक महिलाएं भी हमें खड़ी नजर आ रही है।

और हम जैसा कि देख सकते है एक दुकान भी हमें नजर आ रही है जहां पे एक आदमी कुछ खरीदारी करते हुए नजर आ रहा है।

ऐसे की हम देख सकते हैं कि ये एक म्यूजियम है।

इसे देख सकते हैं एक आदमी बाहर खड़ा है जिसने सफेद रंग की टी शर्ट पहनी हुई है।